ऊपर सीलिंग है जिसमें लाइटे बहोत अच्छी लग रही है।

और सामने बहुत सारे डिब्बे हैं साबून हल्दी पाउडर।

यहां पर सामने पानी की बोतल पड़ी हुई है टेबल --

जहां से मुर्गियों को सपोर्ट किया जाता है।

कोई घर है जो एक ऑफिस की तरह बना हुआ--

टेबल है टेबल के सामने दो कुर्सी परी है जो ब्लैक कलर की --

ये किसी शादी वगैराह किसी फंक्शन की फोटो है जहाँ बहोत सुंदर डेकोरेशन की हुई है।

और ऊपर एक पीले कलर का पोस्टर लगा हुआ--

ये सामने एक बिल्डिंग है जिसको पूरा सजावट किया हुआ--

नीचे खिलौनो की दुकान है जिसमें बहोत सारे खिलौने हैं।

यहां पे एक रास्ता है जिसमें ये टेंपल --